पीछे आसमान नजर आ रहा है वह--

इसके साथ में कुर्सियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

जो की व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।

बीच से एक बड़ा सा रास्ता है।

जहां पर बड़े बड़े टेबल्स और कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिसके पास बहोत सी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

इसके अंदर बहुत से लोग जा रहे हैं।

यहां पर मुझे एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है।

मंदिर के बाहर छोटी-छोटी मूर्तियां नज़र आ रही हैं।

यहां पर मुझे एक शॉप दिखाई दे रही हैं।

जिसके अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

साथ में ही नदी भी दिखाई दे रही है।

जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बेडरूम दिखाई दे रहा है।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

सड़क के पीछे दूर बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक सुंदर सा हॉल दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत से सोफे लगे हुए हैं जो कि वाइट और पेंसिल कलर के दिखाई दे रहे हैं।

परे एक डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है।

रास्ते के साथ में ही छोटे-छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसके आगे बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और यहां बनती हुई नजर आ रही है।

और चारों और अंधेरा दिखाई दे रहा--

सामने बहुत बड़ा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहोत सी बुक्स रखी हुई नजर आ रही है।

बुक ले लेते हुए नज़र आ रहे हैं।

इसके पीछे बहुत सी बुक्स है।

जिसके ऊपर से बहुत सारी लाइट्स लगाई हुई है।

यहां पर मुझे एक शहर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत से बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत सी सीढ़ियां भी नजर आ रही है।

इसके साथ में भारतीय जीवन बीमा दिखाई दे रहा है।

समुन्दर में मुझे एक बहोत बड़ी किस्ती दिखाई दे रही है।

साइड से बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे छोटी-छोटी खिलौने नज़र आ रहे हैं।

यहां पर मुझे एक मं दो तीन मंदिर नजर आ रहे है।

कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

साथ में पीछे लोग बाइक पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ बाइक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके बीच में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां व्यक्ति डॉक्यूमेंट में कुछ काम करता नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है।

साइड से एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

साथ में यहां पर गणेश जी की--

यह मुझे सॉस की बोतल दिखाई दे रही है।